एक आदमी गाना गा रहा है जिसके पीछे एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है।

इस तस्वीर में लोग योगा कर रहे है।

इस तस्वीर मे बड़ा सा स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा--